और सामने बहुत सी बस दिखाई दे रही है रेड कलर की वाइट कलर की और मकान भी दिखाई दे रहे हैं फर्श पर डिज़ाइन है ईंट जैसे पत्थर लगे हुए--

और वो चेक कलर की शर्ट पहने हुए है ब्लैक कलर की पैंट और चश्मा लगाए हुए है गेट दिख रही है जो येलो कलर में --

यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अ टाइप की बनी हुई है और इसकी दीवार पिंक कलर की है सामने सोफा रखा हुआ है जिस पे वाईट रेड फ्लावर का कवर है।

और सामने टेबल पर एक कुत्ता दिखाई पड़ रहा है जो की कुछ उसका इलाज हो रहा है हरे कपड़ा डला हुआ है उसके ऊपर।